इस तस्वीर में बहुत सारे घने झाड़ीदार पेड़ पौधे --

यहां पे पेप्सी का प्रचार किया गया है दीवाले सफ़ेद तथा हरे रंग की और उसके पाए लाल रंग के हैं

इस तस्वीर में आप एक इवन ज्योति डिजिटल एक्सरे की दुकान के बोर्ड को देख सकते हैं |

इस तस्वीर में आप पेड़ की शाखाएं देख सकते है जोकि बोहोत पतली है।

जोकि बहोत किरणें जगह से निकलते हुए आ रही हैं।

तथा दूसरे पेड़ के पास बोहोत सारा युवक दिखाई पड़ रहे।

इस तस्वीर मे आप बहुत सरे-पेड़ पौधे देखेंगे तथा कुछ लोग भी यहाँ पे --

इस तस्वीर में बहुत सारा घर यानी की मकान बना हुआ दिखाई पड़ रहा है।